एक बस नजर आ रही है जो ब्लू कलर की है वहीँ एक कार नजर आ रही है जो ग्रे कलर की है एक बिल्डिंग है जो रेड कलर की है एक पोल भी नजर आ रहा है।